बीच वाली पटरी में ट्रेन आ गई है जिसका रंग हरा है।

यह एक रूम है जहां दो टेबल लगे हुए हैं जिनका रंग लाल है ।

मंदिर के बाहर एक आदमी खड़ा है जिसने सफेद कलर के कपड़े पहने हैं।

नदी में बहुत सारा पानी आ रहा है।

बहुत दूर दूर में पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं और घरे भी बनी हुई है।

टेबल के ऊपर बहुत सारे बोतलों में अनेक अनेक प्रकार के सामान हैं।

दुकान के टेबल पर तराजू रखा हुआ है। बहुत सारे डिब्बे भी सामने रखे हुए ह--

मोर के नीचे बहुत सारी लकड़ियां रखी हुई है।

सभी लड़कियों ने अलग अलग प्रकार के ड्रेस पहने है सभी के हाथों में कुछ न कुछ है।

दीवार का रंग ब्लू है।

सामने कुछ गंदगी भी है सामने एक प्लास्टिक है जिसका रंग हरा है।

पेड़ पर एक बोर्ड लटका हुआ है।

यह एक कपड़ा दुकान है यहां बहुत सारे कपड़े रखे हुए है।

नीचे कुछ कपड़े का बॉक्स भी रखा हुआ है।

तालाब पानी से भरा है तालाब से कुछ दूर में बहुत सारे घरे बनाए गए हैं।

यह बस है इसके आस पास एक दो बसे और खड़े हैं।

इसके सामने एक व्यक्ति खड़ा है जिसने लाल रंग की कमीज पहनी है।

टॉयलेट मैन गेट लगा है जिसके ऊपर स्काई बॉन्ड लिखा है।

आसपास बहुत सारे घर और दुकाने भी हैं।

यह एक कपड़ा दुकान है जहां बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं सामने बहुत सारे कपड़े टंगे हुए हैं।

दुकान के अन्दर एक व्यक्ति हैं दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा हैं।

तीन व्यक्ति बैठकर काम कर रहे हैं और तीन देख रहे हैं।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

और कई सामान डिब्बे मे ऊपर रखे गए है।

यह एक मंदिर है इसका रंग सफ़ेद है।

प्लेट को किसी आदमी ने पकड़ा है।

इस व्यक्ति ने सफेद रंग की टी शर्ट पहनी है।